जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ काफी लोग हैं और यह एक आइसक्रीम की दुकान है।

और साइड में एक काला वस्त्र पहने एक व्यक्ति झुका हुआ दिख रहा होगा आपको।

मेरी फेवरेट मिठाइयों में से एक काजू कतली है जो यहाँ मैं दिखा सकता हूँ।